इसने हरे कलर के टी-शर्ट पहना है इसमें सफ़ेद कलर का बादल दिख रहा है इसमें एक लकड़ी का खंभा दि लकड़ी का खंभा दिख रहा है इस --

हाथ दिख रहा है इसमें हाथ में अंगूठी दिख रही है इसमें दो बॉटल दिख रही है जिसमें थम्स अप बना हुआ है।

सामने एक हरे कलर की कालीन दिख रही है अंदर एक कांच का का-का-कांच का गेट दिख रहा है सामने से एक लड़का आ रहा है जिसने बल-पिले कलर का टी-शर्ट पहना है इसमें बहुत खूबसूरत सजावट --

इसमें बहोत सारे छोटे-छोटे पत्थर दिख रहे है इसमें एक लड़का --

शॉप दिख रही है जिसमें तीन लड़के दिख रहे है इसमें एक लड़के का पीले कलर का शर्ट दिख रहा है इसमें उसका कंगन दिख रहा है इसमें उसका मांस दिख रहा है इसमें दो थाली दिख रही है इसमें बाल्टी दिख रही है।

आर.के. कॉफ़ी स्टाल शॉप दिख रही है जिसमें तीन गुलाबी कलर की बोतल दिख रही है एक स्टील का गिलास दिख रहा है इसमें कुछ लड़के दिख रहे हैं इसमें पीछे पेड़ दिख रहे है।

सफ़ेद कलर का अस सफ़ेद कलर का बादल दिख रहे है दो बिस्किट की बर्नी दिख रही है।

बिजली का खंभा दिख रहा है और छोटे इसमें बहुत सारे वायर दिख रहे है इसमें एक कैरेट दिख रहे है।